दिए गए चित्र में हम भगवान की तस्वीर देख रहे हैं यानी एक मंदिर का दृश्य है जहां पर ये मंदिर यानी जहां पर मंदिर का कमरा जिस कमरे में भगवान होते हैं।

और जो पूरी इमारत है उसको यानी एक तरफा गुलाबी रंग से पेंट किया गया है और दूसरी तरफ से--

ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है जहां पर हमको कुछ लोग बैठे हुए और खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर जो लोग हैं--

जिम का काफी बड़ा हॉल है यहां पर एक एक्सरसाइज की जाती है फिलहाल तो ये खाली लग रहा है तो दो ही तीन लोग नजर आ रहे हैं।